यह कोई मॉल का पिक्चर है ना मॉल का पिक्चर जहां पर कप सेट है कप सेट है अच्छी तरह से रखा हुआ है सेल के लिए।

अरे यहाँ पे रोड का सीन है जो कि बाइक वगैरा सारा कुछ जा रहा है यहां पे जैसे यहाँ और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी है यहां पे जैसे बाटा वगैरह का शोरूम यहां पे दिख रहा है यह किसी रोड का सीन है यहाँ पे यहां पे ऐसे देख सक--

इसको देखने से तो साफ पता चल रहा है के यह सब्जी मार्केट है वेजिटेबल मार्केट है जहाँ पर यह सारा कुछ नीचे है वेजिटेबल वगैरा रखे हुए है अलग-अलग वेजिटेबल यहाँ पर रखे हुए हैं आप लोग इसको आकर अपना परचेस करेंगे तो वेजिटेबल मार्किट है।

इसको देखने से तो यह लग रहा है कि यह किसी होटल का पिक्चर्स है और होटल का रूम है जहां पर बेड लगा हुआ है टी.वी. है फसिलिटी है अलग-अलग तरिके के पर यह तो पूरी तरीके से होटल का पिक्चर्स है।

तकिए बिद जो बोर्ड लगा हुआ है इस तरीके का बोर्ड जो कि बिल्डर वगैरा लगाते हैं कि इनके ततीह कार्य निर्माण हो रहा है।